पंखे लगे हुए है सी_सी टी_वी कैमरा भी चल रहे हैं।

यहां पर ब्लैक कलर की विंडो है और यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे है।

जिसमें से कुछ लेडिस है कुछ जेंट्स है यहां पर एक टी_वी लगी हुई है।

ऊपर टीन के तख्ते पड़े हुए हैं जिसमें बहोत सारी सरिया लगी हुई हैं।

यहां पे बहोत बड़ी एक मशीन है जो सफेद रंग की है।

बीच में एक बोहोत बड़ी पट्टी दिखाई दे रही है जो पत्थर की बनी हुई है।